यहाँ बहोत गंदा पानी भरा पड़ा है।

और बहोत बड़ी बड़ी घासे जमी हुई है।

थोड़ा भीड़ सी दिखाई दे रही हैं बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और यह एक कंपनी नजर आ रही है।

यहां बहोत बड़े बड़े फ्लैट नजर आ रहे हैं।

यह एक गुरुद्वारा लग रहा है।

यहां लोहे के सामान रखे हुए हैं।

यहां बहुत अच्छी वाटिका सजी हुई है।

बड़ा सा गेट भी लग्या हुआ है।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

और उधर दरवाजा भी आया है।

एक औरत लड़के को गोदी में ले रही है।

दो लाल रंग की कुर्सी दो कपले रंग की बीचसी हुई है।

और बहोत सारे खड़े दिखाई दे रहे हैं।